इस पिक्चर में एक --

पिक्चर में दो अ ले एक लेडीज और एक जेंट्स दिख रहे हैं जहां पर ऊपर डेकोरेशन किया गया है पिंक कलर के परदे लगे हुए है।